खंभा भी हैं लकड़ी भी पड़ा हुआ हैं।

मछली भी है किनारा भी है यहाँ धुआं - धुआं भी दिख रहा है।

ये हॉस्पिटल जैसे दिख रहा है यहाँ पर इंसान लोग आ रहै हैं अपने इलाज के लिए बैठे हैं।

सर भी खड़े है यहाँ बड़ा-बड़ा दरवाजा है बड़ा सा कमरा है स्वेटर पहने है।

ए पेट्रोल पंप दिख रहा है उसके आगे में एक पेड़ भी है यहाँ पर --

ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है किनारे में रोड है उसमें ऑटो चल रही है बाइक भी वाले चल रहै हैं यहाँ पर--

एक गाड़ी गैरेज है यहाँ पर कार सब खड़े किए हुए हैं बनाने के लिए--

घिरावा भी है यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत दिख रहै हैं पहाड भी दिख रहा है चारों साइड से --